कोने में एक सी_सी_टी_वी कैमरा भी दिख रहा है।

कोने में दीवार के ऊपर एक घड़ी भी लटकाया हुआ है।

यह पिक्चर में मुझे एक स्टोर दिख रहा--

कुछ बाइक और बाईसाइकल भी नजर आ रहा है।

यहां पर एक दुकान नजर आ रहा है दुकान के अंदर बहोत सारा टाइल्स रखा हुआ है।

गेट के कॉर्नर मे एक पेड़ भी दिख रहा है।

दीवार का रंग भी ब्लू कलर का है।

घर के पीछे बहोत सारे ऊंचे ऊंचे पहार भी है।

यह रूम का दीवार का रंग पिंक कलर का है।

यह फोटो में एक ठो रेस्टोरेंट दिख रहा है।

रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे टेबल भी हैं।

कुछ मछली बड़े हैं और कुछ मछली छोटे हैं।

इस गेट में अलग अलग रंग के पेंटिंग किया गया है।

चेयर के सामने भी कुछ टेबल रखा हुआ है।

जमीन का रंग लाल कलर का है।

एक जन अपने बाइक को ब्रिज से क्रॉस कर रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक बड़ा सा गेट दिख रहा है यह गेट भी खुला होकर है।

यह बिल्डिंग में बहुत सारा बालकनी भी बना हुआ है।

आसमान भी पूरे सफेद कलर का है।

रास्ते में एक इंसान बाइक भी चला रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक कमरा नजर आ रहा है।

सीलिंग के ऊपर भी बहोत सारा लाइट जल रहा है।

आसमान भी काफी साफ दिख रहा है।